उसके सामने एक जेंट्स खड़ा है लाल कलर भी का कलर हो रहा है और ब्लैक भी हो रहा है साइड में दुकान है मगर शटर बंद है उसका।

वो लोहे का गेट लगा हुआ है मकान में सिलेटी कलर मकान में पीला कलर हो रहा है।

बहुत सारी बोरियां दिखाई दे रही है बोरियो में कुछ भरा हुआ है पत्थर टाइप की भी दिखाई दे रही है।